पीछे सफेद रंग की दीवार है।

यह एक कंप्यूटर लैब का चित्र है जिसमें टेबल पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं।

यह एक हॉस्पिटल का चित्र है जिसमें एक शीशे की विंडो बनी हुई है वहे पीले रंग का कैलेंडर भी लगा हुआ है।

यह एक कपड़े की दुकान का शोरूम है।

सामने एक बड़ा सा शीशा भी लगा हुआ है।

सामने एक घड़ी लखी हुई है ऊपर लाइटें जल रही हैं वेह कुछ व्यक्ती खेल रहे हैं।

जिसके पीछे कुछ लड़के खड़े हैं वेह दिवारो पर चिलमिल लाइटे लगी हुई हैं।

सामने कुछ दुकानें है जिसपर फुल मालाएं लटकी हुई है।

ऊपर लाइटें भी जल रही हैं।

सामने बच्चों के स्कूल बैग भी रखे हुए हैं।

पीछे एक शिशे का एक गेट भी लगा हुआ है वेह--

हरे और सफेद रंग का काउंटर भी है जीस पर--

एक महिला बैठी हुई है।